जिसमें की वेल्ड फर्नीचर लगे हुए हैं ड्रॉवर्स हैं ड्रॉवर्स के ऊपर --

कुछ कर्मचारी नजर आ रहे हैं।

यह सुंदर सी इमेज कुछ योगा करते हुए लोगों की है जिसमें बहोत सारे लोग एक टैरिस पर बैठकर--

इस इमेज में हमें एक कार जाती हुई नजर आ रही है।

ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक वॉच इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर कैमरास रखे हुए हैं निकोन का भी यहां पर बोर्ड नजर आ रहा है।

इसमें बहुत सारे लोग एक ही झुंड में बैठे हैं।

रेक बना हुआ हैं जिस पर तरह तरह के आइल की केन रखी हुई है।

माइक में बोल रही है और चार लोग यहां चेयर पर बैठे हुए हैं।

गाड़ियाँ है कुछ बाइक नज़र आ रही हैं पेड़ों के नीचे कुछ लोग खड़े हैं। '

इसके लॉज में एक कार खड़ी हुई दिख रही है।

इसके आस पास टीन शेड का एक रूम भी बना हुआ है।

ओपनिंग होने वाली है ऐसा इसे डेकोरेट किया हुआ--

इस इमेज में मजदूर वर्ग के लोग--